और सफ़ेद और लाल कलर किया हुआ है। यहाँ पे हमें एक लोहे का गेट भी नजर आ रहा है जो काला कलर जिसपे किया हुआ है।

थालियाँ हैं और वो कुछ खा रहे हैं ऊपर की साइड पंखा लगा हुआ है छत भी सफ़ेद कलर की गई हुई हैं।

और हमें एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है। इसे पीला कलर किया हुआ है और एक पेड़ भी है।